यहाँ फोटो में हमे सामने एक होटल दिखाई दे रहा है ।

बोरियो में कुछ सामान रखा हुआ है | अन्दर एक आदमी कुछ बनाते हुए दिखाई दे रहा है ।

एक आदमी के हाथ में हेलमेट रखा हुआ है और दूसरा आदमी अपनी कमर पे हाथ रखे हुए खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है |

दो लम्बे-लम्बे से मीनार दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है ।

बस बाहर से देख ही सके --

और यहाँ हमें काफी सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इस मैदान में बहुत सारे बच्चे और खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और सड़क के ऊपर एक गाड़ी है जिसमे हम बैठ कर इसको पूरी तरह से अच्छे से घुम सकते हैं |

इस फोटो में हमें तीन लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं |

यह एक मंदिर की फोटो है जो की सफ़ेद रंग के संगमरमर से बना हुआ मंदिर है |

इस मंदिर के ऊपर गुंबद पर एक झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है।

एक ब्लॉक में हमें कुछ टी-शर्टें रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह किसी म्यूजियम की फोटो है जहां हमें बहुत सारे मूर्तियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

बस बाहर से इन्हे देख सके और इस कारीगरी को समझने की कोशिश कर सके --